ठंडा लगल ह अन्दरवा

यहाँ पेड़ है खूब बड़ा बड़ा गार्डन बना हुआ है गार्डनवा में घास हैं।

कुछ जमिनिया पे रखल ह वोइपे कुल चढ़-चढ़ के कुदत हउन लईक वां ढेर सारा लइकन हउन कुल दौड़े वाले करत --

ऊपर ढ़ेर सारा सामान रखल ह साबुन ह तेल ह निरमा ह शम्पू ह खाय वाला भी सामान ह बच्चवन क कुल --